यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए खिलोने मिलते हैं बहोत सारे अलग अलग तरह के गुड्डे हैं बैट बॉल हैं फुटबॉल हैं बैडमिंटन --

बैठक चल रही है इसके आगे दो आदमी खड़े हुए हैं एक आदमी बैठा हुआ है कुर्सी पे--

काफी अच्छी जगह है यहां पर बहोत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं।

ये एक ब्रिज बना हुआ हैं इसके नीचे से रोड निकल रही है यहां पर।

रोड पर कुछ आदमी गाड़ी लेकर जा रहे हैं ये एक अच्छा बना हुआ है व्हाइट कलर का और पिंक कलर का।

उस पहाड़ों पर एक टावर लगा हुआ है बहोत अच्छा नजारा यहां से बादल आए रखे हैं बारिश का मौसम हो रखा है।

ये यामाहा शोरूम है जिसमें बाइक और--

रेड कलर ब्लू कलर ब्लैक कलर येलो कलर सब कलर की बाइक मिलती है यहां पर दो चार आदमी खड़े हुए --

यह एक दुकान है सैमसंग और सोनी की है यहां पर सैमसंग और सोनी के हर प्रोडक्ट मिलते हैं।

इसके आगे एक कांच का दरवाजा लगे हुए हैं ऑफिस के खिड़कियां भी लगी हुई हैं यह ऑफिस पीले कलर का और रेड कलर का है इसके इंटरलॉकिंग की हुई है बहुत ही अच्छा ऑफिस बना हुआ है।

यहां पर चार-चार मंजिला बिल्डिंग बनाई हुई है किसी का पिंक बर है किसी का येल्लो है किसी के ब्लैक एंड व्हाइट है।